दरवाजे दिखाई दे रहे है और ऊपर हरे और कुछ डिजाइन बनी हुई है ऐसा लगता हैकी ये दरगाह है धन्यवाद।

इस चित्र में बड़ा रोड दिखाई दे रहा है रोड के बाजु में एक रिक्शा दिखाई दे रहा है और ऑटो रिक्शा अ रोड पर खड़ा है।

इस चित्र मे कुछ अ लोग दिखाई दे रहे हैं दुकाने दिखाई दे रही है और दुकानों के नाम दुकानों के ऊपर रुद्र इंटरप्राइजेज ऐसे नाम लिखा है।

इस चित्र में एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है उस बिल्डिंग का कलर है सफेद और बिल्डिंग के ऊपर कुछ नाम दिखाई दे रहा है समुदयिक स्वस्त केंद्र करके----

और बहुत बड़ा प्लॉट दिखाई दे रहा है प्लॉट के उपर कुछ अं मकानें घर जैसे दिखाई दे रहा है पेड़-पौधे दिखाई दे रहें हैं और हरियाली छाई हुई है धन्यवाद।